कुछ बनाने वाला समान है कुछ बरतने है नीचे में कारपेट है और अ कुछ बना बनाने में समान है।

खंडहर लग रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है ऊपर एक पार्क दिख रहा है कुछ एंटे दिख रही है नीचे में कुछ घास लग रहा है।